इस फोटो में मुझे बिजली की तारें दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे एक साइकिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे महिला पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे सेंटर बैंक ऑफ इंडिया का चैनल गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे ढेर सारा गेहूं दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पंखा दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे ट्रेन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे महिला पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे लाइटे दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे एक सैलून की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मे मुझे कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।